एक फैक्ट्री है फैक्ट्री में ढेर सारे लोहे से बने हुए पुर्जे व मशीने हैं।

रोड पे एक बाइक चल रही है। डिवाइडर है जो कि घाँस से बनी हुई है साथ मे लंबे लंबे पेड़ है।

एक बड़ा सा गार्डन है गार्डन मे रंग-बिरंगे फूल लगे हुए हैं हरी रंग की गोल आकार मे घाँसे हैं।